दे रहे है पीछे सफ़ेद कलर का बादल सा दिखाई दे रहा है निचे चूड़ियाँ पड़ी हुई --

और खम्बे है खम्बो पे बहुत बड़ी बड़ी वायरइंग भी की गयी है आगे की तरफ--

पुलिस भी खड़ी हुई है इसमें तिन गाड़ियाँ खड़ी है एक इनोवा है दो --

और बिल्डिंग में चार खिड़कियाँ दिख रही है दो खिड़कियाँ लम्बे में दिख रही है निचे भी रेलिंगस सी लगी --

वीरान दिखाई दे रहा है इसमें पीछे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगे दिखाई दे रहीं हैं ।

यह एक बॉडी बिल्डिंग करता हुआ एक लड़के की फोटो है जिसने की दोनों हाथ उपर करें जो बाईसेप और एप्स दिखा रहा है पीछे इसने --

मशीने भी बहुत सी रखी हुई दिखाई दे रहीं हैं लड़का एक स्माइल कर रहा है ।